और पराठे का कलर ग्रे कलर का है ब्राउन --

इस इमेज में एक टीचर अपने बच्चों का आर्ट एण्ड क्राफ्ट वर्क देख रही है ओर उन्होंने सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

और सिर पर उन एक दुपट्टा सफेद कलर का टांग रखा है।

यह एक ऑटो रिक्शा स्टैन्ड है जिसके सामने से पानी बह कर निकल रहा है और उसी के साइड से एक --

यह एक यूनियन बैंक का ऑफिस है और उसी के साइड में यूनियन बैंक का ही ए.टी.एम. भी बना हुआ है जिसके बाहर --

इस आकृति मे कुछ मजदूर छत भरते हुए दिखाई दे रहे है और एक व्यक्ति प्लैनिंग का काम कर रहा है।